एक लड़की अपने नाखुन को देख रही है।

यहां पर कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं ज--

यहा पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक गाड़ी मारुति सुजुकी की हैं।

यहां पर बाहर कुछ कुर्सियां रखी है और आदमी भी हैं और कुछ खाट भी रखी हैं बाहर।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

यह एक पंप है जिसमें से पानी निकलता है और ईट भी लगी हुई है और --

फ्री नहीं है पैसे देने पड़ेंगे।

ओ_के गाड़ी मेरे पास नहीं है।